कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बैंक के कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी-सी घड़ी लगी हुई है।

यह फोटो एक बिल्डिंग की है बिल्डिंग को बहोत सुंदर झालरों से सजाया गया है।

यहाँ चारों तरफ इस बिल्डिंग के चाइनीज लाइटें लगा दी गई हैं। बिल्डिंग लाइटों से जगमग करता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ फोटो एक बस स्टॉप की है ढेर सारी बसें खड़ी हैथोड़ी दूरी दूरी पे।

खड़ी हैं और इस सड़क के किनारे-किनारे पे कोचिंग इंस्टिट्यूट की बिल्डिंग है और --

चार बच्चें में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस सड़क के एक किनारे एक बैंक खुला हुआ है जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक है।